जहां पहाड़ वगैरा बहुत अच्छी--

बोहोत से चीज है यहाँ पूजा का थाली हैं।

यहां मिठाई वगैरह है लाइट्स वगैरह ए_सी है भगवान है।

सब चीजें है और पौधे भी है और डोंगे भी है।

और कुछ बना भी रहे है भैया लोग अंकल लोग--

दिखाई दे रहा हैं आइसक्रीम वगैरा गाड़ी वगैरा ऑटो --

भगवान वगैरा है पूजा वूजा सब चीज का समान है।

कुछ कुछ हो रहा है और बहुत से लोग है यहाँ --

यहां हरी भारी चीज दिखाई दे रहे है बहोत खूबसूरत जगह है।

और ये बहोत अच्छी जगह है कुछ--

मु कलर में पौधे दिखाई दे रहे है।

लाइट वगैरा है बहोत अच्छे अच्छे नेकलेस है।

कोई छू पोस्टर वगैरा--

और इधर भी फ्रिज और यह और बगल कुर्सी है।

अच्छे अच्छे भगवान की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कलर्स है और आदमी लोग हैं बहुत।